एक गॅरेज है जिसमे एक कार खड़ा हुआ है जो की ग्रे कलर का है उसके पिछे दो लाइट लगी हुई है जो की लाल कलर की है।

उसके ऊपर बहुत सारी ट्रॉफी रखी हुई है वह सभी वाले के लिए ट्रॉफी लगी गयी है।

सामने बहुत सारे कुर्सियां लगी है जो कि सभी लाल कलर की है उनमें कुछ औरते बैठी हुई है और कुछ आदमी बैठे हुए है।

और नीचे सफेद कलर के सभी जुते पेहने हुए है सामने तिरंगा है जोकि पेरहा है और सभी के सामने दो सर है।

एक ज़िम है ज़िम के निचे सफेद कलर के टाइल्स लगी हुई है पर कूछ कुर्सियां लगी हुई है जोकि कुछ काले कलर की है और कुछ लाल कलर की है।

एक बस स्टॅंड है जिस मे बहुत सारे बस है जो कि हरे कलर की है और काले कलर की है और कुछ लोग है जो कि बस के अंदर बैठे हुए है।

एक बस स्टॅंड जिसमे बहुत सारे औरते है और कूछ आदमी लोग है जो बाइकी बस के ऊपर चढ़ रहे है और औरते जा रही है।

बगल मैं एक बैग रखा हुआ है जो कि काले कलर का है जो की आदमी एक बेड में सोया हुआ है बगल में एक खिड़की है जिसमें परदे लगे हुए है।

एक रस्ता है रस्ते में एक बस खड़ा हुआ है जो की बस बहुत बड़ा है उसमे काले कलर का पेंट हुआ है और अंदर बहुत सारी खुर्सिया है।

खुर्सियों में बहुत सारे लोग बैठे हुए है एक आदमी है जो की सीढ़ी से चढ़ रहा है बस के ऊपर और बस के सामने एक आदमी है जो की लाल कलर का टी-शर्ट पेहना हुआ है।